और फूलों का रंग गुलाबी लाल पीला हरा नीला--

जिसका रंग नीला है और पीछे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसका रंग पीला --

जिसने लाल रंग की टी-शर्ट पहन राखी हुई है वो दुकानोमे मछलिया राखी हुई है जो मरी हुई --

लाल और सफ़ेद रंग कि टी_शर्ट पहन रखी है और एक आदमी ने काले और सफ़ेद रंग कि टी_शर्ट पहन रखी है।

यहा पर एक रोड है जिसके ऊपर बहुत सारे ऑटो जा रहे है ऑटो का रंग काला पीला और हारा है।

और रोड के बाजू मे एक आदमी बैठा हुआ है जिसमे सफ़ेद रंग टी-शर्ट पहन रखी है।

और उसके गले मे गुलाबी रंग का रुमाल डाला हुआ है।

यहाँ पर एक कमरा है जिसके अंदर बहुत सारी सामग्रिया रखी हुई है उसीके अंदर फर्श निचे का फर्श लाल और सफ़ेद रंग का है और उसके ऊपर एक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है।

और उस कुर्सी का रंग लाल है और आदमी कि टी-शर्ट का रंग नीला है। उसके हाँथ में--

यहाँ पर बहुत बड़ा कमरा है जिसकी दीवारों का रंग सफ़ेद है और उसकी छत का रंग भी सफ़ेद है और इस कमरे के अंदर बहुत सारे लोहे की मशीने रखी हुई है।

उसके अंदर एक आदमी भी खड़ा हुआ है जिसने नीले और सफ़ेद रंग की टि-शर्ट पहन रखी है।